और जिस बल्ब का कलर होआइट है।

और एक लीटर बॉक्स भी लगा हुआ है वहाँ पे और एक हाथ में --

ग्रे कलर का शर्ट और वाइट कलर का पेंट पहना हुआ है आंखों में चश्मा लगाया हुआ--

उसके बगल में बहोत सारा खेत में धान लगा हुआ है और इधर से पानी वगैरह बह रहा है।

ये एक पहाड़ का सीन है जिसके बगल में बहुत सारा पेड़ पौधा है उसके नीचे कुछ--

ग्रे अ कलर पे पौधा है और --

दो तरह का फूलों का डे डेकोरेशन किया है एक का कलर पीला है एक का कलर व्हाइट है और एक का कलर --

अ विडियो मेरे पास इमेज है उसका ये बैडमिंटन का है जिसपे बहुत सारा गुब्बारे लगा हुआ है ऊ --

चोर चोरखा पगहा एक है जिसपे जिस जिसके अंदर दो गाड़ी लगा हुआ है।

उ ऊपर का पेंट गन भीच का पेंट रेड है और फिर ऊपर व्हाइट --

चादर ओढ़ी हुई है उ उएस उ उसके पास ट्रोली बैग है।

और उ उसके बगल में गुब्बारा वगैरा उड़ रहा है।